पिक्चर में दिख रहा है।

क्रीम कलर में विंडो है।

लो है और यहां पर--

सारे बच्चे चूर रहे--

इस फोटो में नजर आ रहा है।

बहोत बड़ा शोरूम है यहां पर--

बहुत सारे बैंक हैं इसका नाम बैंक ऑफ़ बरोडा है।